यहां आप देख सकते हैं ये एक बिल्डिंग हैं और इस बिल्डिंग के पीछे आप देख सकते हैं एक और बिल्डिंग हैं आसपास गार्डन हैं।

और डेयरी का नाम है बस्तर ओके और इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि और किराने का समान भी यहां पे मिलता है।

ये शॉप साड़ियों की है आप देख सकते सड़ियो में काफी सारी वैरायटी है और यहां पे बैठने के लिए गद्दा लगाया गया --

यहाँ हम देख सकते हैं ये एक दो मंजिल बि बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर देख लिया आप बादल कितने प्यारे लग रहे हैं।

यहां आप देख सकते हैं ये गार्डन है गार्डन में देख लीजिए स्लाइड्स है और एक छोटी सी बच्ची है जोकि उसपे झूल रही है।

आस पास आप देख सकते है छोटे छोटे पेड़ पौधे हमें नजर आ रहे--

यहां देख लीजिए ये एक गार्डन है गार्डन में हमें आस पास काफी सारी हरियाली दिख रही है प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पौधे हैं पेड़ हैं।

यहां हम देख सकते हैं काफी सारे हमें आसपास घर नजर आ रहे हैं और घर के पास कुछ बिल्डिंगे भी बनी हुई है।

यह देखिए आप यहां पे ये एक गार्डन है और गार्डन में देख लीजिए छोटे-छोटे से पौधे हैं।

इनके लिए छाया भी की गई है।

यहां देख लीजिए ये एक बहुत ही प्यारी मूर्ति है और इस मूर्ति में आप देख सकते हैं राधा कृष्ण जी --

यहां हम देख सकते हैं ये एक विद्या मंदिर है।

यहां देखिए यहां पे हमें एक्सिस बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है और उसके बाहर आप देख सकते काफी सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे है पीछे हमें आसपास घर नजर आ रहे है और उसके आगे जो खाली --

जहां पे की छोटे छो बड़े बड़े पेड़ और सु कुछ सूखे सूखे पौधे भी हैं उसके पीछे हमें बिल्डिंग नजर आ रही --

और आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक पेड़ भी है बड़ा सारा बना हुआ और बाहर एक गाड़ी खड़ी है।

यहां हम देख सकते यहां पे एक बहोत ही बड़ा गार्डन नजर आ रहा है गार्डन की हरियाली की तो बात ही कुछ और है और इसके साथ इधर जो देख लीजिए --